और नीचे टाइल पे सफेद- सफेद कलर ऊपर बल्ब लगल बा और इधर ब्लेक टाइल लगबा ।

और साइड में डस्टबीन बा|

और दीवार पे कुछ लिखलबा और खटिया बा और और--

पेड़ बा और पेड़ के पास पिंक पिंक वाला कलर बा--

के नीचे हरा- हरा कुछ गिरल बा कार के टायर टायर बा कार का टायर के पास पत्थर बा पत्थर के साइड ग्रिल बा ग्रिल के साइड में और लोहा बा।

न मस्जिद सफेद-सफेद बा कलर में बा लाइट लगल बा।

और कपड़ा ब्लू पहन ले बा।

यहाँ बोर्ड बा इंगलिश पे लिखल बा और गेट बा और गेट पे गॉडफ़ादर के उ --

और पानी काला ब्लेक बा और पानी पे लाइट दिख्त थोडा।

पुल बा पुल पे पटरी बा पटरी पे ट्रेन बा और--